इस फोटो में बोरी नजर आ रही है।

इस फोटो में गेट नजर आ र--

इस फोटो में शॉप नजर आ रही है।

इस फोटो में मैगी नजर आ रही है।

इस फोटो में गाड़ी नजर आ र--